यहां पे बहोत सारी लड़कियां डांस कर रही हैं इनके पीछे तीन कलर के बैलून लगे हुए हैं जो झंडे के कलर को दर्शा रहे हैं ऑरेंज --

इस शॉप पे कान्हा नाम लिखा हुआ है यह मिठाई की दुकान है इस पे एक ब्लू कलर की टी शर्ट पहना हुआ आदमी जा रहा है।

कुछ पतले डंडे बना रखे हैं कुछ मोटे डंडे हैं उनके ऊपर पेड़ काट के डाल रखे हैं।

उनके नीचे छोटे छोटे ग्रीन पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस पे दो गुमटियां भी बना रखी है गुमटी मेहरून कलर से बना रखी है इसके पीछे नीले रंग का आसमान दिख रहा है।

पे एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा है।

पार्क के अंदर बैठने के लिए कुर्सी लगा रखी है पार्क के पीछे का एरिया पहाड़ी एरिया है।

रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।